पीछे प्लाई लगे हुए हैं और पीछे बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं और व्हाइट कलर के दीवाल है।

अं पेंट बना हुआ है पीछे विंडो है ऊपर--